काले रंग का लोहे का बड़ा सा गेट लगा है।

एक लाल रंग की कुर्सी को देख रहे हैं।

यहां पर हमें बहोत से लोग नजर आ--

साथी ही यहां पर हम कुछ सीरमेंट की चेयर देख रहे हैं।

तबला लिया हुआ है साथ ही कुछ महिलाओं की मूर्ति बनी हुई है जो की आदिवासी महिला लग रही है।

कुछ टॉवेल नजर आ रहे हैं साथ ही व्यक्ति के हाथ में भी टॉवेल नजर आ रहा है।

हमें सामने प्याज आलू और लहसुन के ढेर नजर आ रहे हैं।

सामने टेबल पर कुछ बर्तन नजर आ रहे हैं।

साथ ही हमें एक गोल आकृति में गार्डन जैसा नजर आ रहा है।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

सामने हमें जाली में कुछ पंछी भी दिखाई दे रहे है रैक पर हमें कुछ बॉक्सेस भी नजर आ रहे हैं।

बाहर हमें कुछ सफेद रंग की बड़ी गाड़ियां नजर आ रही हैं।

भीतर हम कुछ लोगों को भी देख पा रहे हैं।

सामने सफेद और भूरे रंग की बड़ी बड़ी टेबले नजर आ रही है।

कुछ लोग भी हमें यहां पर दिखाई दे रहे है।